यहां एक पावभांजी की दूकान दिखाई दे रही है जहां पर एक आदमी पावभाजी बना रहा है।

इस ईमेज में एक मस्जिद दिखाईं दे रही है।

यहाँ पे बहोत सारे प्रकार के बुक्स हैं यू जैसे यूपीएससी जनरल नॉलेज कई प्रकार के बुक्स हैं।